और एक टावर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर आपको लोहे के जीने की तरह कुछ रखा हुआ कुछ देखने को मिलेगा।

जिसके बाहर एक ब्लैक कलर की कार रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां मुझे घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

येह फोटो एक किराने जनरल स्टोर का फोटो है।

और कुछ नमकीन के पैकेट लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर आपको एक लोहे की शटर भी लगी हुई देखने को मिलेगी।

यहां पर मुझे एक ताला भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ छड़ भी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

यहां मैने देखा की एक खंभा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे।

इसके पास बहोत सारे खम्मे भी लगी हुई देखने को मिल रहे हैं।

हॉल में मुझे सोफे भी डले हुए देखने को मिल रहे हैं।

और यहां पर मुझे गेट भी लगा हुआ देखने को मिल रहा है।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

यहां आप देखेंगे कि लो कुछ लोहे की पाईप भी ऊपर डली हुई दिखाई दे रहे हैं।

और कूलर की तरह कुछ पंखी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक झंडा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।